ये हमारे के सवारी जैसा है।

जॉब करने के भी सुविधा मिलता है इसमें जो है एक सुरक्षित

ये एक अच्छा सुविधा है बच्चों के लिए बच्चो के और खुशहाल रहते है।

पुल दिया है जो जो श्रीमया में हुआ है पटना --

करने वाला को बहुत ही देकर अंदर फील आता है अच्छा लगता है ।

अगला बार भी मैच में क्रिकेट में इंग्लैंड इंग्लैंड से भारत हार गया था ।